पट्टी भी लगी हुई है और सामने एक मेज खड़ी है नीले रंग का उस पर पेंट है इसमें काफी सारी किताब और कोपीयां है ।

यहाँ एक स्कूल बना हुआ है स्कूल के चारो ओर पेड़ पौधे लगे हुए है स्कूल के सामने एक बिजली का खम्बा भी लगा हुआ है ।

बड़े -बड़े शीशे भी लग रहे है और इसमें बलब जल रहे है।

यहाँ पर एक मैकेनिक की दूकान के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है गाड़ी पर एक खाली सफ़ेद --

एक छोटी सी नदी बहती हुई दिखाई पड़ रही है और बीच में कुछ --

यहाँ पर किसी कार्यक्रम के दौरान कुछ छोटे बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे है नीचे एक लाल --

कॉपी और किताब रखी हुई है और एक रैक में पेंसिल और पेन रखे हुए है ।

और कट्टो के ऊपर एक टैग लगा हुआ है जिस पर उन कट्टो के रुपे लिखे हुए है ।

यहाँ पर यह एक किले का दरवाजा बना हुआ है दरवाजा यह टूटा फूटा हुआ है और नीचे दरवाजे के रास्ते में --

यहाँ एक दीवार पर लाल सफ़ेद और हरे रंग के गुब्बारे एक पंक्ति में लगे हुए है।

यहाँ पर किसी नेहर के ऊपर यह मेट्रो --